बहुत बढ़िया हरियाली ह भईया बहुत सुन्दर लगत ह।

बहुत बढ़िया शाम के समय नाव की सवारी करत हवन लो भईया। बहुत सुंदर नजारा है। तना मजा आवे ला की सवारी करने में न। लोग कितना लुप उठाते हैं।

बहुत बढ़िया बाउंड्री बा बहुत सुन्दर बा बाउंड्री के गेट में लागलबा लोहे का गेट बा।

बहुत सुंदर बा भईया शाम के गंगा स्नान लोग करत बान। गंगा स्नान से बहुत फायदा होला शरीर के सब दुख ख --

स्कूल क रूम ह भईया। क्लास रूम ह जेमे बच्चा लोग आवे न पढ़े न।

खेत-खलियान क सिताई सिंचाई में बहोत फायदा होता है नहर से --